यहाँ गाड़ी में बोरा लोड किया जा रहा है।

ये कोई मोतिया रखी हुई है।

बहुत बहुत ही अच्छा नदी है और इस नदी में बिच बोंबे।